यहाँ दिखा जा रहा है एक प्रोग्राम जिसमे बहुत सारे बच्चे और उसके मम्मा पापा --

और दोनों ही लड़की एक ही जैसे कपड़े पहन के ये बैम कर रहा है।

बोहोत सारे पराठे हैं एक डिस्कर ऊपर जिसके कलर वाइट कलर है।

इस तस्वीर में एक होटल रूम दिखाया गया है जिसमें एक टी_वी है।

कुछ चेयर भी दिख रहा है सामने कुछ लोग सो रहे हैं उसके सामान के साथ।